गार्डन को दिखाया गया है जहाँ पर हमें बहुत से हिरण दिखाई दे रहे हैं। वहीं इसके आस-पास बहुत सी लोहे की दीवारें लगाई गयीं हैं

और मंदिर के अंदर हमें कुछ व्यक्ति बैठे हुए भी दिखाई दे रहे।